यह पर एक न्यूजपेपर रखा हुआ है सफेद कलर का दिखाई दे रहा है एक रजिस्टर रखा हुआ है जो की नीले कलर का दिखाई दे रहा है निचे पैरदानी दिखाई दे रही--

यह एक नदी दिखाई दे रही है नदी में पानी सफ़ेद दिखाई दे रहा है यहाँ पर रेत दिखाई दे रही है यहाँ पे पहाड़ दिखाई दे रहा है पहाड़ में --

और निचे टाइल्स दिखाई दे रही है जोकी काली सफेद दिखाई दे रही है उपर लाइट सफेद दिखाई दे रही है और इसमे रैक मे कुछ चिपका हुए है जो हरा कलर का दिखाई दे रहे है।

और वहा ऊपर आसमान काला और सफेद दिखाई दे रहा है और साथ ही सामने पहाड़ दिखाई दे रहा हरे भरे पेड़ उसमे पौधे नज़र--

यहा एक बहुत बडा क्रिकेट मैदान दिखाई दे रहा है जिसने हरी भरी घासे दिखाई दे रही है कही मिट्टी बी दिखाई दे रही है जिसके चारो और घर दिखाये दे रहे है कुछ सफेद कलर के कुछ लाल कलर के दिखाई दे रहे हैं।